कुछ पास का ये अ गेट है और इस साइड में ऑरेंज कलर का --

यहां पर महादेव बाबा का फोटो बना हुआ है।

साइड में बांस से कुछ लगा हुआ है ।

और भी बहुत कुछ यहां पे बहुत सुंदर वातावरण लग रहा है।

एक आदमी फोन से बात कर रहा है और एक ब्लू कवर है एंड रेड कवर का टेंपो है।

वो सो कुर्सी पर बैठे हैं।

और लिखा हुआ है लिव द स्वीट फील्ड एंड इट रेंड ।

यहां पे पूरा का पूरा लग रहा है जैसे कहीं शादी का सेट है।

सामने में सोफा लगा है ।

यहां पर शादी का कोई हॉल लग रहा है इसके आसपास बहुत सारी रोशनी है।

जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ।

कि यह एक योगा का केंद्र लग रहा है।

स्टूडियो है ये एक डांस स्टूडियो है।

जहां पर फिगर बना हुआ एक बच्चा नाच रहा है।

और अ लगता है जैसे कोई शादी का जो कपड़ा लेता है ना वो।

और अ बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं यहां टाइल्स लगे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारी चीजें हैं मशीन है।

ये एक अ योगा क्लास है या फिर डांसिंग क्लास ।

अगल पगल देखा जाए तो बड़े-बड़े दीदी भैया लोग भी हैं।

कि यह एक पार्क लग रही है।

इसके अगल-बगल घर भी हैं ये फूट पर टाइल्स लगे हुए हैं।

स्प्राइट की बॉटल किनले की बॉटल एंड माजा फ्रूटी थंब्स-अप एंड एवरीथिंग कुछ भी --

और ये एक बुक का प्रचार कर रहे हैं वॉर नाम का।

जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं।

कि यहां पर एक--

और तीन बॉटल्स हैं और ऊपर में --

जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं।

और यहां पे काफी बैठने की जगह है।

जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं।

जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं।

सेलर ऑर्डर सप्लाई ।

जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि--

और साइड में बैग पर मोबाइल रखा है इस इंसान के साथ वाइट मोबाइल एंड --

जैसा कि आप यह पर देख सकते हैं।

पीछे आईना है इनके अगल-बगल--

जैसा कि आप यहां पर देख सकते है।

यहां पे सूरज बाबा का रथ यात्रा निकला है।

जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एक रेस्ट फैमिली रेस्टोरेंट लग रहा है।

और बहुत सारी चेयर्स हैं जिनमें काफी--

जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यह एक रेस्टोरेंट है।

आगे में मोड़ पर कितने सुंदर आकर्षित किए हुए हैं।

और बगल में पेड़ है और पूरे ग्रीन कलर से टेंट को सजाया गया है।

जो पीछे से टकला हो रखा है।

और ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है।

जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि--

ईमर्जन्सी ट्वेंटीफ़ौर ईंटों सेवन --

आपके कालीन सेवा में एक बोर्ड लगा हुआ है एक --

जहां पर तीन टैंपू और एक वाइट कलर के सुजुकी आ रही है।

जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यह एक जंगल है।

जिन्हें इशारा दिया गया है।

तीन दुल्हे की शेडवानी है।

सी से लगाए गई हैं कि इसे कोई छू ना सके।

और कितनी सुंदर आकर्षित आकर्षित पेंटिंग है।

ये दीवार पे बनाई गई है इसके अगल-बगल भी और--

इसके अगल-बगल चारों तरफ पेड़ पौधे फूल लगे हुए हैं।

जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं।

और साइड में स्कूटी लगी हुई है और इधर कुत्ता पैकेट फाड़ के कुछ खा रहा है।

और तेलुगु में कुछ लिखा गया है।

बल है और--

एक कूलर है टैक्स है टेबल है।

सुंदर लग रहे हैं।

जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यह एक--

और यहां पर कितने बच्चे हैं।

यहां इसके सामने एक आदमी स्कूल में जा रहा है।

जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं।

ये कितना सुंदर आकर्षित मनमोहक चित्र लग रहा है।